और यहां पे बहुत सारे व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

और स्कूल में बहोत सारे लोहे का गेट भी लगे हुए है।

और सामने में बहुत सारी टेबल और कुर्सियां भी लगी हुई है।

और सामने में एक बिजली का खंबा दिख रहा है।

कुछ घरे सफेद और एक घर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

और यहां पर चार लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारा फूल भी रखा हुआ है।

ऊपर में एक सफेद कलर का लाइट भी लगा हुआ है।

और विद्यालय के ऊपर हिंदी विद्यापीठ लिखा हुआ है।

यह एक सब्जी का दुकान है।

और ऊपर में बहोत फूलगोभी और केला भी रखा हुआ है।

और सामने में दो पीले पीले कलर के टेडी बियर भी है।

और सामने एक दुकान भी दिखाई दे रहा है।

मंदिर में कुछ रंग बिरंगे फूल सजे हुए हैं।

और सामने में एक मां का मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक पंखा और लाइट भी लगा हुआ है।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

और यहां पर बहुत बड़े-बड़े चट्टानें भी हैं।

और सामने में एक काउंटर भी बना है।

जिसका दोनों गेट खुला हुआ है।

यह एक फास्ट फूड का दुकान है।

और सामने में एक बैनर भी लगा हुआ है।

यह एक झील है।

यहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा है जहां पे बहोत सारे आदमी है।